यहाँ चट्टानी एरिया अ दिखाई दे रहा है पहाड़ी एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ हरे भरे पेड़े दिखाई दे रहे है सीढियाँ लगी हुई दिखाई दे रही।

इमेज में बहोत सारी यहाँ कुर्सियाँ ब्लैक कलर की रखी हुई बीच में टेबल रखी हुई घड़ी दिखाई दे रही है बहोत सारी खिड़कियाँ --